ओर पीछे पेड़ पौधे भी दिख रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखने मे कितना अच्छा लग रहा है। ओर दो कुर्सी भी रखा हुआ है। बेटके मौज़ करने के लिए।